है और यहां पे कुछ स्टेज भी लग रह एक स्टेज भी लग रखा है ये इसके पास में सीढ़ियां है।

रेस्टोरेंट की तस्वीर नजर आ रही है यहां पे कुछ टेबले दिखाई दे रही है कुछ कुर्सीया भी है और ये--

लाइटे जल रखी है और सीढिया भी है और यहां पे पेड़ भी दिखाई दे रहा है अंधेरे में ये --

और इसमें हेलमेट एक कैमरा और एक पानी की बॉटल नज़र आ रही है यहां पे सूखे सूखे --

और कॉपी पेन भी नजर आ रहा है हमारे को एक मोबाइल भी नजर आ रहा है।